एक एल_सी_डी भी लगा हुआ है।

एक बहुत बड़ा यहां पर झील सा है और वहां पे लाइट उईट लगा हुआ है और एक लड़का है जो बैठा हुआ है।

वहां पे बहोत सारे आदमी हैं जो नहा भी रहा हैं।

और काउंटर पे एक आदमी बैठा हुआ है जो कुछ लिए पेपर वेपर लिया हुआ है।

एक बहुत बड़ा दुकान है जिसमें बहुत सारे बल्ब जल रहे है और एक आदमी है जो वहां पे खा रहा है।

एक घर है घर के बाहर बहोत सारे आदमी है जो दो पोस्ट लिए हुए हैं और--

और साइड में गारी उरी भी लगी हुई है बहोत सारे।

यहां पर एक टेबल है जिसपे छोटे-छोटे बहोत सारे अथी रखा हुआ है और उसका कलर है जो थोड़ा-थोड़ा पीला कलर का है।

बहोत बड़ा फील्ड है और फील्ड में कारपेट भी बी बिछाया हुआ है जो हरा कलर का है।

एक बहोत बड़ा रूम है जिसमें बहोत सारे सिलाई मशीन रखा हुआ है और कुछ रखा हुआ है सिलाई मशीन पर जो गमछा से ढका हुआ है।

एक दुकान है जिस दुकान में बहोत सारे सामान रखा हुआ है और बहोत सारे बोर्ड भी टंगा हुआ है।